इस दृश्य में एक जिम दिखाया गया है जहां पे बहोत सारी जिम की मशीनें रखी हुई नजर आ रही है।

और उन पटरों के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

एक बाइक में व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे बाईकें लगी हुई है।

मोमबत्ती भी बहोत सारी जलती हुई दिखाई दे रही है।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

एक काउंटर भी बनाई गई है जिस काउंटर के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है।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

इस दृश्य में एक ऑफिस दिखाई दे रही है जीस ऑफिस में अलग अलग केबिन बनाए हुए हैं।

टाइल्स की बने हुए पाए भी नजर आ रहे हैं।

बहुत से वेयर हाउसेस बनाए गए हैं और उन पे चढ़ने के लिए सीढ़ी भी बनाकर दी हुई है और उसके किनारे- किनारे बहुत से पौधे लगे हुए हैं।

शौचालय के बाहर एक बैनर लगा कर उसपे कुछ लिखी हुई है।

बाउंड्री के पास बहुत सारी बाइक पार्क की हुई है।

एक शॉप भी दिखाई दे रही है जो कि बाटा की है।

और एक स्कूल की बस भी खड़ी हुई है जिस पे स्कूल लिखी हुई है और येलो कलर की बस है।

इस दृश्य में एक मीनारो वाली इमारत नजर आ रही है जिसका कलर लाल और मीनार का कलर गोल्डन है।

उसके पास एक गेट भी दिखाई दे रही है।

और उसके पास एक वर्कर दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक पब्लिक प्लेस दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में ग्रोसरी मार्ट दिखाई गई है जहां पर ग्लोबल एंड लोकल लिखकर बैनर भी लगाई हुई है।